बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत बड़ा पोस्टर है लाल कलर से लिखा हुआ है नीचे नीला कलर का है‌। समुदायक संस्था केंद्र पोखरा का सीता माँ जी का पोस्टर है।

बहुत सारा अवार्ड्स सब भी दिया हुआ है पोस्टर सब लगा हुआ है बहुत अच्छा है सजाया हुआ है बैलून --

लड़की सब है। भारतीय नृत्य कर रही है। पीला लाल कलर का ड्रेस है बुलु भी है पीछे दीवार है बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है। लड़की सब है पीछे मूर्ति भी है। बहुत अच्छा नृत्य कर रही है। बहुत सुन्दर है।